ऊपर आसमान का कलर वाइट ब्लू दिखाई दे रहा है और कुछ बिलिडिंग दिखाई दे रहीं हैं जिनका कलर वाइट दिखाई दे रहा है।